यहाँ पे गाँव है और गाँव में--

यहाँ पर गोरिल्ला का स्टैचू बना हुआ है ब्लू कलर में हैं।

बबुल का पेड़ है और यहाँ पे सभी हिरण है।

बाहर बाइक खड़ा हुआ है अंदर बहुत भीड़ है और रोड पे एस_ बी _आई लिखा हुआ हैं ।

यहाँ पे मैदान है और ग्रिल लगा हुआ हैं ।

ट्राली बैग और खड़े है कुछ लोग पेड़-पौधे दिख रहे है और यहाँ पे ऎसा लग रहा है कोई कॉलेज हैं ।